यखा म हमें पहाड़ का ऊँचाई बटेन एक नजारा दिखेण लग्युं हम द्येखण लग्यां कि यख बड़ा-बड़ा क्वोले का ढाला लग्यां।

निस एक गांव बस्युं ते गांव का बीच बिटिन एक नदी जाण लगीं गांव का सामने पहाड़ लग्युं पहाड़ पर डाला होयां‌।

यखा हमि आमने सामने दुई बड़ा बड़ा पहाड़ दिखेण लग्यां और हमि पहाड़ों का बिच मा छोटु सा मैदान दिखेण लग्युं ई मैदान पर बहोत छोटि छोटि घास होईं और कुछ डाला भी होयां और हमे सामने साफ़ बादल दिखेण लग्यां।

तों पहाड़ पर हरा हरा घास घूस पेड़ पौधा लग्यां और पहाड़ों का बिच मा हमे ढोखरा दिखेण लग्यां जों पर हरा हरा धान लग्यां।

और घाटी का ठिक सामने एक बहोत बडू पहाड़ दिख्येणु जैपर बहोत ज्यादा बरफ पड़ीं।

और यहा का ठीक सामने हमें एक और बड़ू पहाड़ दिख्येण लग्युं हमें आसमान पर एक भौत बड़ू बादल दिख्येण लग्युं।

यखा मा हमि चार डाला दिखेणा यी चार डाला एक दूसरा मथि लगायां अर ये मु ये डाला मूर्ति जन दिखेण लगीं।